एक बड़ा सा ओप्पो लिखा हुआ भी दिखाई दे रही है।

येलो कलर का बास्केट दिखाई दे रही है।

एक बड़ा गड्ढा भी है कोना में खुदा हुआ ज मट्टी भी है।

यहां पर मुझे एक आदमी काम करता हुआ दिख रहा है।

बास्केट भी दिखाई दे रही है और लाइट भी दिखाई दे रही है।

और वॉल भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे ब्लू कलर का टंकी दिखाई दे रही है।

आसपास में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे गाड़ी दिखाई दे रही है।

झोपड़ी के अंदर लाल कलर की लाइट है।

बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

और टिकट बुकिंग काउंटर दिखाई दे रही है।

एक दो बच्चे भी खरे हो रहे हैं।

यहां मुझे किनारे में एक वायर के रोल दिखाई दे रही है।

एक लड़की फोन बात कर रही है।

मुझे यहा व्हाइट कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बिस्तर दिखाई दे रही है।

खिड़की में लाल कलर का कर्टन दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे दो लोग दिखाई दे रही है।

एक येलो कलर का चेयर रखा है।

मैंगो का पेड़ दिखाई दे रही है।

उसके गले में माला भी पहना हुआ है।

नीचे मुझे रेड कलर का कारपेट दिख रही है।

मुझे यहां बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

पेड़ भी लगा है और खिड़की दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे कुछ जहाज जैसे भी बड़े बड़े दिखाई दे रही हैं।

फ्लावर पॉट्स भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक बड़ा सा महल दिखाई दे रही है।

बीच बीच में पत्ता भी लगाया है।

पीछे बहुत सारे मेरी गोल्ड फ्लावर रखें हुये है।